यह एक बाज़ार है यह बाज़ार में बहोत सारे ग्राहक सामान खरीदने के लिए बाज़ार में आते हैं बाजारों में --

यह जगह घूमने फिरने के लिए बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है काफी सारे आदमी यहाँ पे आये हुए भी है।

एक मैदान में है। यह मैदान पे मंदिर दिखाई देती है। यहाँ पर मंदिर के साइड में काफी सारे हरे-भरे घास भी दिखाई दे रहे है। पेड़-पोधे भी लगे हुए है। यहाँ पे काफी सारे आदमी आते भी है।

होटल के बाहर काफी सारे गाड़ी भी लगी हुई है बाइक भी खड़े हैं बहुत सारे आदमी भी होटल में आए --

यहाँ पे काफी सारे आदम --